यहा पार एक बडा सा ग्राऊंड जैसा दिखाई दे रहा है वहा पे ओवरब्रिज भी बना हुआ है और यहाँ पे एक दो--

हिन्दी मे लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है दरवाजे के पास बहुत बड़ा दरवाजा बना हुआ है जो लोहे का है एक लाइट का खंबा लगा हुआ--

यहाँ पर एक लेडीज एक जेन्ट्स बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। ओआ उसके पीछे में एक पोस्टर लगा है उसमे--

यहाँ पर एक आदमी है जो फोटो खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कांच लगा हुआ है। कांच के अंदर में एक ऐसी दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहे है यहाँ पे भी कु्छ लोग खड़े हुए है गुपचुप का ठेला लगा हुआ है यहाँ पे दो लेडिज भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर तीन लड़के दिखाई दे रहे है। एक लडकेने हात मे मोबाइल लिया हुआ है और तीनों खड़े हुए है और पीछे बहुत सारी--

दरवाजा लगा हुआ है काँच लगा हुआ है सामने दो आदमी जाते हुए दिखाई दे रहै ऊपर में भी एक शटर जैसा बना हुआ दिख रहा है जो लोहो का--